गोंदिया कर्मचारी वसाहत लिखा हुआ है।

यह बैंक का चित्र दिखाइए दे रहा है।

गोपाल शाखा ऐसा लिखा हुआ है।

यहां पर हमें बहोत अच्छा डेकोरेट किया हुआ दिख रहा है।

बहोत सारे टेबल कुर्चे लगे हुए दिख रहे हैं।

और हमें वहां पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं।